यह एक बस स्टैंड है ये बस स्टैंड बहुत ही बड़े है यह--

वे दोनों हाथों में भी जूता पहने हुए हैं दो पैर में पहने हुए हैं एक हाथ नीचे जमीन में जूता पहने --

यह एक दूकान है यह दूकान बहुत ही बड़े है यहाँ बहुत तरह के समान रखे हुए हैं यह --

यह एक महजिद है। यह महजिद बहुत ही बड़ी है यहाँ |

बहुत सारे लोग लेने के लिए आते हैं यहाँ स्टीकर भी बिकती है।

हैं बहुत ही गहराई है इस डैम में बहुत बड़े-बड़े मछली भी है यहाँ लोग घूमने के लिए आते है।

ये खिलाडी खेल रहे हैं दो एम्पायर भी --

वह बहुत ही अच्छे दीखते हैं दोनों मूर्ति के गले में माला पहनाइ गए हैं।

बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुए है। यहाँ बहुत तरह की दूकान भी --

एयरटेल फोर जी बोर्ड लगाए हुए है इस बाजार में बहुत तरह के समान भी मिल --